सारे लोग हैं जौन देख रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा लड़का भी खड़ा हुआ है जो कि बात सुन रहा है। कुछ लोग पार्क में घूम रहे हैं।

दो युक्तियाँ कैफ़े के बाहार खड़े होके फोटो खिचवा रही हैं एक युवक जाते हुए कैफ़े को देख रहे हैं।

कुछ बलूंस नीचे पड़े हैं कुछ बलूंस ऊपर छत पे लगे हुए हैं। युवक फोटो खिचवा रहा है उस रेड हार्ट के सामने खड़े होके।

यहाँ पे एक यूवक है जिसके अजु बाजु रेड बलून्स बलून का डेकोरेशन किया है लन--

इस इमेज में हमें लेडिज सैलून दिखाई दे रहा है लेडिज सैलून में एक लैडी अपने हेयर कट करवा रही है।